ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है की--

इश तस्वीर में दिखाई दे रहा है की एक छोटी बच्ची का यहाँ पर बर्थडे केक सेलिब्रेट किया जा रहा है और उस केक पर--

यह पहाड़ी इलाके की तस्वीर दिखाय दे रही है।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है की यह कोई योगा क्लासरूम नजर आ रहा है जहा पर एक व्यक्ति लगभग सात आठ व्यक्ति है जो की योगा करते दिखाई दे रहे है अब --

पेड़ ही पेड़ दिखाय दे रहे हे ओर काफी संख्या में यहा पे हरियाली नजर अ रही हे आगे की तरफ एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा हे।

धोले कलर के कपडे भी पहेने हुए है और किसी मंदिर में भी दिखाई दे रही है।